ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ हैं एण्ड यहाँ दो चार चित्र बने हुए हैं पंखा हैं लाइट एण्ड बिन्दु बनी हुई हैं एण्ड काउटंस लगे हुए हैं बिन्दु भी--

तथागत टूटोरियल्स और यहाँ पे तथागत करियर बुक्स भी हैं तथाकत क्लासेस भी हैं और यहाँ पर आपको बुक वगेरा भी मिलेंगी क्लासेस भी लगती हैं कोचिंग सेंटर भी हैं।

अब पेड़ -पौधे बहुत सारे है यहाँ पे बहुत सारे घर भी बने हुए हैं एण्ड येलो कलर से कलर किया--

एक पार्क हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल पे बहुत सारे लोग नहां भी रहे हैं और स्लाइडिंग वाले झूले भी लगे हुए हैं उधर से उधर भी लगे हुए हैंऔर वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत लगे हैं मिट्टियाँ भी बहुत हैं।

एक सर पेड़े पार्ट्स हैं यहाँ पे रखा हुआ हैं या बहुत अच्छा से लगा हुआ हैं यहाँ पे पंजाबी लोगों की वो जो चोटी मे चमक डालती नहीं हैं वो भी यहाँ पे लगी हुई हैं।

फोर फोर वन लिखा हुआ है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है एक बिंदु बनी हुई है भाईट कलर से पैंट किया गया है डाक घर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है रेड कलर से पैंट है और अल्लो कलर से टिक कि गई है।

यहाँ एक पार्किंग है यहाँ पे मोटर साइकिल खड़े होंगे बाइक खड़ी हुई है और स्कूटी भी खड़ी हुई है और यहाँ पे कार भी खड़ी हुई है और डोगी बैठा हुआ है टीन पड़ी हुई है छत पे ऊपर और --

वाइट और ऑरेंज कलर से दो बलुंस लगे हुए है एंड नमकीन भी है बहुत सारी और अब एक काउन्टर भी है और यहाँ पे एक लोग कोई किसी से बाते कर रहा है और नमकीन वगैरह भी लगी हुई है।